कुछ चट्टाने टूटी हुई है जहाँ पर थोड़ा पानी दिखाई दे रहा है।

किताबे है बोतले है जैमस है चॉकलेट्स है बुक्स है रबड़ पेन्सिल सब का रंग अलग-अगल है।

जो दो महिलाएं उस में अ उस चित्र बने हैं।

और वहाँ पर दो कुर्सियाँ रखी हुई है।

उसके पास में एक ओर घर है।

जिसका रंग लाइट ब्राउन रंग का है।

यहाँ कुछ कार्यक्रम चल रहा है।

और बाकि दो के हाथो मे डंडा है।

आस-पास दो फोटो लगे है फादर कुछ --

एक दो गाड़ियों पे लोग आ-जा रहे है।